ये एक जंगल है जंगल मे बड़े-बड़े पेड़ हैं पेड़ हरे है और आसमान नीला हैं यहाँ पर कोई और नहीं है।

ते हैं और बोहत बड़े-बड़े पेड़ हैं जोकि हरे --

और माला लिए है वो भी अच्छा है हाथ में सितार लेके सितार पर भी माला है जो अ लाल रंग का है ये बड़ा ही प्यारा दृश्य है।

नॉनस्टिक और प्लास्टिक दिख रहा है और एक आदमी अपनी बेटे को देख कर लंचबॉक्स लेने के लिए आया है शायद एक औरत बैठ के बेच रही है।

और उसके पीछे जो कर्टन है वो लाल रंग का है ये दृश्य बहुत ही प्यारा दिख रहा है।

ये शाम का दृश्य है जहाँ एक आदमी मोटरसाइकिल लेके जा रहा है और उधर से ऑटो आ रही है साइड में लैम्पपोस्ट है और उसमे भी लाइट्स है ये स्ट्रीटलाइट्स है।